बीच में समुद्र की तरह जल भरा हुआ है जैसे--

बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ऑफिस हैं जो अच्छी तरह से--

इसमें ग्राउंड में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

जे बैटरियां हैं जो इनवर्टर में या ठेला मोटर में लगाई जाती हैं और --

जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह साफ और स्वच्छ दिखाई दे रही है।

यह ललित लोकवाणी है और पी उम्म अच्छे कलर से पुती हुई है।

रास्ता को संकेत दे रहे हैं। जिसको जिस तरफ जाना है उसे तरफ के लिए संकेत दे रही है।

इसके आगे दुकानें रखी हैं।

उसके जस्ट आगे विकास की बोनी मशीन है।

जो खेतों में बुवाई के समय पे काम आती हैं और एक ग्राउंड भी है और एक--

बच्चे के पीछे कुछ सामान नजर आ रहा है।

पीपल का पेड़ नजर आ रहा है।

और बमुला का पेड़ नजर आ रहा है।

जो चावल रखे हुए हैं दाल रखी हुई है।

सामने मोटरसाइकिल पर एक आदमी जा रहा है।

यह समैया एग्रो स्टेज की दुकान है।